और यहां पर बहोत सारे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं।

घास दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार पर बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं उस पर भारतीय--

यहां पर पार्क दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।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

गाड़ी का रंग सफेद एक का लाल और एक का काला है।

और बहोत सारी लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं लकड़ियों के उपर मोर दिखाई दे रहा हैं।

और यहां पर फर्श भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर छत भी दिखाई दे रहीं हैं।

और टाइम हेल्थ केयर भी लिखा हुआ है।